ये गैरेज है इस गैरेज में गाड़ी का फिनिशिंग किया जाता है।

इसमें फ्रॉक पैंट जीन्स सूट सलवार दुपट्टा टी-शर्ट इत्यादि सारे सामान मिलते हैं और बिकते भी हैं भी टू --

ये घर बहुत सूंदर है| है पाइप भी लगा है| इसमें रंग- बिरंगे फुल भी लगी हुई है| सोलर लाइट भी लगे हुए है|

ये दूर-दूर से सवारी भी लाते है और इस पर और ले भी जाते भी है।

और इधर ताक भी रही है।

यहाँ पे देख रहे है हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के पास बहोत सारे कुर्सी भी । यहाँ पर --

वो जेंट्स है एक बच्चा है और इसमें से काउंटर में लगे हुए हैं शीशा भी लगे हुए हैं फूल का सजावट भी --

यहाँ पर सुबोध फास्टफूड हैं। इसमें बर्गद बनाते हैं।

कहीं का जगह यह बहुत सुदार है।

और इसमें मुछें भी बनवाया जाते हैं बाल तरह-तरह के कटाये जाते हैं फेसिअल भी किया जाता है इसमें --